अ जैसा कि आप सभी इस पिक्चर में देख सकते हैं।

जैसा की आप सभी इस पिक्चर में देख सकते हैं।

और पंखे भी लगे हुए हैं और एक आदमी यहां खड़ा है।

अ जैसा कि आप सभी इस पिक्चर में देख सकते हैं।

यहां नज़र आ रहे हैं और हरियाली छाई हुई है।

और इस फिल्ड में एक लड़का साइकिल को चलाते हुए नजर आ रहा है।

और यहां छोटे छोटे नीचे घासें जमी हुई हैं।

जैसा कि आप सभी इस पिक्चर में देख सकते हैं।